यख पिछाड़ी पर हर्युं बरयूं घास छ दिखेण लग्युं हरयां-भरयां पत्ता छन दिखेण लग्यां पिछाड़ी मा जी एक नदी कर छ दिखेण लगीं।